लाल कलर की दीवार से पुता हुआ है।

जहां रोड पर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

ये एक गार्डन दिख रहा है गार्डन में बहुत सुंदर- सुंदर पेड़ लगे हुए हैं।

पर कोई लोग नजर नहीं आ रहे और नीचे--

साइड में पक्का रोड भी नजर आ रहा है पर उस रोड पर कोई लोग नजर नहीं आ रहे।

ये स्विमिंग पूल का सीन दिख रहा है यहाँ बहुत बड़ा एक पूल दिख रहा है।

कुछ लोग भी खड़े नजर आ रहे हैं।

ये एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

पेट्रोल डलवाने आते हैं एक बाइक वालापेट्रोल डलवाकर जा रहा है।

ये कोई स्कूल के बाहर का सीन दिख रहा है।

और बहोत सारे पेड़ भीं नजर आ रहें हैं।

ये नर्सरी का सीन है यहां पर पेड़ बिकते हैं।

ये कोई किराने की दुकान दिख रही है यहां पर।

ये खाने-पीने की दुकान नजर आ रही है जहां पर समोसा पानीपूरी--

इधर बहुत सारीटेबल और चेयर दिखाई दे रही हैं।

ये एक नर्सरी का सीन नजर आ रहा है।

यहां परबहुत सारे गमले दिखाई दे रहे हैं।

कच्चा है जहां पर गंदा पानी भरा हुआ है बहोत सारी गाड़िये आ जा रहे हैं।

और सफेद कलर का बड़ा गेट भी है।

वहां जीने भी दिखाई दे रहे है जीनो के पीछे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

ऊपर जाली भी लगी हुई है पीछे काले कलर का पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

ये कोई मंदिर का चित्र नजर आ रहा है।

जिसमें पीछे कांच की दीवार दिख रही है।

और ऊपर चैक्स वाले बोर्ड डले हुए हैं और भगवान का मूर्ति भी रखी हुई है।

यह कोई बगीचे का सीन नजर आ रहा है।

बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं अंदर कुछ सामान लेने आए हुए हैं।

सा बाहर मॉडल साड़ी पहने खड़ी हुई हैं।

पीछे बड़ी शेल्फ है उस शेल्फ मे भी शायद साड़िया ही रखी होंगी।

एक स्टेज भी बना हुआ है स्टेज पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

पीछे सफेद कलर से कुछ डिज़ाइन दीवार बनी हुई है दो आदमी खड़े हुए बातें कर रहे हैं।